राहत मिलती है इनसे पैसे निकालने में।

सूर्य भगवान के कारण बहुत ही सुन्दर दिख रहा है।

आकृति दिखाई दे रहे दे रहा जो पत्थर के नीचे दो आदमी --

वो देख रहे है लगता है कि वो बैठे --

वो अपने मर्जी से उसके नीचे हैं।

वहाँ के अपने स्थिर जगह पर हैं और लोगो को --

दिखाई दे रहे हैं इस नल के सामने --

रंग-बिरंग के फूल लगाए हुए है और यहाँ कापी काफी सारे --